कुछ मिट्टी है यहां पर उसके सामने कुछ पिलर दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी कंप्यूटर लैब का फोटो है जिसमें सामने कुछ लड़कियां काम कर रई है।

कुछ लैपटॉप रखे हुए हैं बैग रखे हुए हैं चेयर्स यहां पर रखी हुई हैं।

ये एक पेन स्टैंड है यहां पर अलग अलग डेकोरेटिंग आइटम रखे हुए हैं।

हॉन्टेड हाउस टाइप का कुछ बना हुआ है।

ये किसी पार्क का फोटो है।

ये किसी सैलून का फोटो है जहां पर एक--

ये फोटो किसी बिल्डिंग का हैं जहां पर--

ये किसी बैंक का फोटो हैं।

ये फोटो किसी कैफेट एरिया का है।

कुछ बच्चे यहां पर इंजॉय कर रहे हैं।

वहां पर कुछ काम चल रहा है।

अलग अलग यहां पर रास्ते हैं।

ये किसी कॉलोनी का फोटो है जहां पर कुछ लोग खड़े हैं।

और उसके सामने एक बाइक है।